सारे रेंज की साइकल हैं लाइट हैं फ्लोरिंग हैं।

से पेड़ है पीछे मंदिर का परिसर है।

फ्लावर डेकोरेशन वाले की शॉप है।

टेबल है चेयर है टेबल पे दो बॉटल्स रखी है पानी की एक कैलकुलेटर रखा है।

फोटो खींच रहे हैं वहाँ नीचे पानी है।

उसके रैक में बहोत सारे टी शर्ट्स रखे गए हैं बॉल रखे गए हैं स्पोर्ट्स का समान रखा है ए_सी है।

आइसक्रीम शॉप है कुल्फी का शॉप है कुल्फी डिलीशियस ये कुल्फी है एक लेडी के हाथ मे --

बहुत सारी यहां पे बंद गोभी लगे हुए हैं उनके अह पत्ते बाहर आए हुए है।

ये एक अ मॉडल बनाया गया है एक--

पार्किंग एरिया हैं पार्किंग का एक रोड साइड एरिया हैं पार्किंग एरिया में बहोत सारी बाइक्स पार्क की गई हैं।